जिसके पास एक सी_पी_यू और यू_पी_एस भी रखा है।

पीछे की तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।

यहां पर सामने की तरफ एक छोटा सा डैम बनाया गया है।

वो की हरे रंग से है और नीचे बीच में फैमिली रेस्टोरेंट लिखा है।

इसके ऊपर की नाही टंकी है और नाही सीट ।